और यहां पर एक बोर्ड भी देखने को मिल रही है और पीछे में बहुत सारे गेट्स भी लगे हुए हैं।

एवं वहां पे सब लोग नाश्ता करते हुए नजर आ रहे हैं।

वो घर उजले कलर की है और आगे में करकट डाले गए हैं।

और उसके पीछे बहोत बरा पहाड़ है।

और यहां पर बहोत सारे रैक्स रखे गए है।

सामने में एक बहुत बड़ी मैदान देखने को मिल रही है और उस मैदान में बहुत सारे लाइनें बनी हैं।

और इसपे वो कुछ किताबें रखी गई है।

और वहां पर क्रिस्चियन का प्लस का निशान है।

एवं वहां पर बहोत सारी रैट की गोली रक्खे गए है।